ऑटो भी है बाइक भी है बाहर में ब्लू कलर गेट है ऊपर से एक अंकल शायद नेट ढूंढ रहे है और यहाँ पे एक पेड़ है जिसमे फूल लगा है उसमे येल्लो कलर का फूल और ग्रीन कलर का पत्ता है और तार वार बहोत सारा है ऑटो में लाइट --

यहाँ पे भी दुकान है जिसमे व्हाइट कलर का टाइल्स वाला पार्ट्स है रेड कलर का कुर्ती व्हाइट और येलो भी है ।